इनमें में जाल लगा हुआ है पीछे देखने पे हरी-हरी घास भी दिखाई दे रही है झाड़ियां दिखाई दे रही हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों पर हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं घर दिखाई दे रहे हैं जिनका छत नीले रंग की है और दीवार सफेद रंग की है।

ये एक सलून का द्रश्य है जिसमें सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है काले रंग की पट्टी जा रही है सामने की तरफ देखने पे क्रेक दिखाई दे रही हे जिसमें सामान रखा है ऊपर भी छत दिखाई दे रही हैं छत पे लाईटे लगी हुई हैं पंखा दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाहर मालाएं टंगी हुई हैं उसके ऊपर एक बोर्ड लग रहा जोकी सफेद रंग का है जिसपे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है पिलर दिखाई दे रहे हैं पिलर पे कुछ लिखा हुआ है।